ब्लू है ऑरेंज है।

चार पीछे लड़का खेल रहा है पीछे एक पोल भी है अर ढेर सारा घर है पीछे।

यहाँ एक बहुत ही बड़ा गुलदार बाग़ फिल्ड है यहाँ ढेर सारा बच्चा खेलता है रोज संडे को मैच होता है।

आगे अ पिछे घर जो मंदिर है उनका कलर है व्हाइट ऑरेंज गोल्डन अ पिछे एक बैनर भी है।

पोस्टर लगा हुआ उधर ढेर सारा एक पेज लगा पेज पे क्या लिखा हुआ नहीं पता।

एक ब्लेड है अ ढेर सारा लाइट भी बिकता है अं ढेर सारा तराजू है एक --

और यहां पेंट भी बिकता है और बड़ा दुकान है।

ब्लू कलर है और हरा कलर है बैनर लगा हुआ है।

पीछे पेड़ के नीचे गांधीजी पुतला भी खड़ा है आदमी होटल के अंदर है क्या कर रहा नय --

अ पीछे ऊपर छत पे जाली गया कौवा के लिए क्रो के लिए।

बहुत ही बड़ा हिरण दो हिरण है बड़ा पेड़ लगा हुआ --

ये घर का पिछे कलर है व ब्लू वा --

पीछे कोन चीज क्या चीज का कॉम्पिटिशन हो रहा यहां बेग है।

सिलिपर एक सूज है आदमी का पेंट अ शट का कलर है ब्लू रेड ।

पश्चिम दरवाजा का लल्लू मुनसी का बुक शॉप है।

अ इधर रंग-बिरंगे का तिरंगा आदमी का कलर है ब्लू ब्लैक बैग टाँगा हुआ है बोतल लिया हुआ पानी पी रहा है फोन एक --

एक आदमी फोन पे बात कर रहा।

ग्रीन और एक ढेर सारा करकट लगा हुआ है लाइट है।

रूम भी है ऊपर ढेर सारा बाइक लगा हुआ पीछे पेड़ है।

बिजली का मजीद में रोज अज़ान पढ़ता है अल्लाह --

मुड़ी इधर कर के उसका कपड़ा का कलर है व्हाइट ब्लू ।

यहां एक जिम का पूरा अगल-बगल पोस्टर लगा हुआ उपर बड़ा फैन है पीछे बैनर लगा हुआ --

यहां फुल का बहोत ही वाला फि ये खेत है आ यहां देखिये फुल ढ़ेर सारा बिकता है यहां रंग-बिरंग कलर गेंदा का फुल है।